मैट भी दिखाई दे रहे हैं योगा में बहुत सारे लड़के योगा भी करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में बहती हुई नदी का नजारा दिखाया गया है जिसमें--

एक तरफ पूरा खाली है और एक तरफ पूरे घनघोर जंगल से भरा हुआ।

बादल बहोत ही मंडराये हुए नजर आ रहे हैं जो की बहोत ही सुंदर नजर है उजाला रंग का इस पे--

स्टेशन पे चढ़ती नजर आ रही हैं एक व्यक्ति पीछे से उतरते नजर आ रहा हैं एक औरत लाठी लेकर खड़ी हुई हैं।

इन मकान का रंग पीला रंग का है और ब्राउन कलर का इसपे अ पतली-पतली धारिया बनी हुई है इसपे बहोत बड़े-बड़े खिड़की है जो कि छड़ से अ --

एक बड़ा सा रुम है इसमें बड़ा सा ए_सी लगा हुआ है बड़ी बड़ी खिड़कियां जोकि खिड़कियां बंद हैं उसमे कुछ बॉटल्स रखे हुए हैं नीचे बैग्स और बुक्स रखे हुए हैं।

यहा पढ़ाई करने के लिए अलग अलग शेल्फस बनाये गये है।

बड़े बड़े खिड़कियां हैं इस पे ब्लू कलर की लाइट्स जल रही है बगल में नीचे कुछ बोरे में कुछ सामान रखा हुआ है।

यहां पर अगल बगल दो मंजिला तीन मंजिला मकान है यहां सामने में दो बाइक और दो--